स्वागतम यहाँ पे ढेर सारे लोग हिन्दू धर्म के रिलिजन के लोग यहाँ पे पाठ पूजा करते है आके ।

गेट है यहाँ पे बहुत ही खुबसूरत-सा है और इस होटल का नाम है होटल देव रेसिडेन्स यह बहुत ही अच्छा होटल है। यहाँ पे जा सकते है हम लोग।

इस इमेज में देख सकते हैं हमारे सामने एक बहोत बड़ा सा चट्टान है। पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये बहोत ही ऊंचा चट्टान है।

कर रहे हैं।

इमेज में देख सकते हैं हमारा सामने ये बहोत ही अजीबो-गरीब गुफा है जिसपे उर्दू वगैरा लिखा हुआ है और यहाँ पे एक आदमी है जो कि फोटोशूट कर रहा है।